पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहां ग्राउंड में एक पत्थरों की चौकी बनी हुई है चौकोर साइज की --

इस दुकान के बाहर सफेद सफेद कलर के बोरे पड़े हैं अंदर फर्नीचर पड़े हैं।

दीवार के पास में ब्लैक कलर का कुछ सामान पड़ा है और यहां पर सामने या दो आदमी खड़े हैं।

और सामने दीवार के ऊपर है गोल्ड गोल्ड कलर किया हुआ है और बीच में चौक में कुछ सफेद कलर किया हुआ है।

आइटम बड़ी है कुछ ब्लैक कलर के है कुछ लाल कलर के कुछ सफेद कलर के हैं।

इस फोटो के अंदर यहां एक मेडिकल स्टोर है।

इंडिया बुक हाउस लिखा हुआ है यहां पर तरह तरह की बुक पड़ी है बुक का सेट किए हुए पड़ी है।

एक आदमी खड़ा है सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं बीच में एक मैडम खड़ी है सामने कोने कोने में कुछ लोग खड़े है।

सामने कुछ चार्ट लगे हुए है।

यहां सामने एक स्टेज प्रोग्राम हो रहा है एक लड़की खड़ी है स्टेज के ऊपर सोफे रखे हुए हैं कुर्सियां --

इस दुकान के अंदर बहोत सारा सामान पड़ा है।

गाड़ियों के पास आगे कुछ बहुत सारे आदमी खड़े हैं यहां पिलर के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है बाहर की साइड पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

घास लगी हुई है और छोटे छोटे लकड़े पड़े हैं कुछ हरे हैं तो कुछ सूखे हुए--

यहां पर बहोत सारी तस्वीर लगी हुई है और यहां बेंच लगी हुई है बेंच के ऊपर कांच की गिलास पड़ी है।